यह एक मूर्ति है जिसके सर पर एक घड़ानुमा आकृति है जिसमें से पानी निकल रहा है।

तथा इस फाउन्टेन के चारों तरफ सुन्दर सुन्दर लाइटें लगी हुई हैं। तथा इस फाउन्टेन के पीछे दो व्यक्ति खड़े हुए हैं।

तथा प्रतिमा के पीछे क्रॉस का निशान बना हुआ है।

इन इमारतों में एक मस्जिद नुमा मंदिर बना हुआ है जिसके चारो तरफ छोटे-छोटे एवं बड़े मकान बने हुए है एवं मकानों में लाइटें जल रही है।

तथा इन साइकिलों के पास एक बाइक भी लगा हुआ है यहां पे तीन शख्स दिखाई दे रहे हैं एक शख्स जाते हुए नजर आ रहा है तथा दूसरे शख्स कल के पास पानी पी रहा है।

तथा ठीक सामने एक ऑटो लगा हुआ है जिसपे दो शख्स काम कर रहे हैं।

यह एक सड़क है जिसके बीचो-बीच एक चौक बनाया गया है जिसपे एक शख्स के प्रतिमा है जो शख्स हाथ में कुछ लिए हुए खड़ा है।